ये भी बहुत सुन्दर लग रहा देखने में यहाँ पे बैठा हुआ है कोई आदमी है ये पानी का बोतल भी है और में कुछ रखा गया है ।

बस पर बांदीपुर टाइगर रिज़र्व लिखा हुआ है ब्लैक बस दिखाई दे रहा है। ये रोड पे जाती दिखाई देता हुआ नज़र लग रहा है।

और यहां भी बहुत सुंदर लग रहा है देखने में यहां एक लगाई गई है एस.बी.आई. सेंट्रल बैंक है और आदमी भी जा रहा है यहां से वहां तक ये भी देखने में जनरल लगता है।

इधर बहुत बढ़िया लगाती हुई नजारा लग रहा है और यह भी पत्थर उथल पे बैठे हुए है और हरे-भरे दिखाए दे रहा हैं।

बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और-और अच्छा ही अच्छा लग रहा है बहुत बेजोरी लगता है।

ये भी बहुत सुंदर लग रहा है और यहाँ पे चीज़ दिखाई देता है और नजर आ रहा है।

और यहाँ पे हरी-भरी भी दिखाई दे रहा है बच्चे सब गोला में घुसाए हुआ है और ये भी बहोत मस्ती में दिखाई देते हुए नजर में आ रहा है और बहोत ही अच्छा लगता है देखने में बहोत अच्छा जगह है ये भी अच्छा है।